फूलो वाला कारपेट बिछा हुआ है उपर की तरफ अ पेड़ दिख रहे है।

सामने एक पहाड़ी मंज़र दिख रहे है।

जहा पे दोनों तरफ पहाड़ दिख रहे है छोटे पथर दिख रहे है नीचे भी जमीन में भी पथर दिख रहे है छोटे --

इस इमेज में एक आदमी है डेंटिंग पेंटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है एक फोर व्हीलर की--

और जिसपे ब्लू कलर का गद्दा बिछा हुआ है और उसके बाजू में ही एक छोटा स्टंड है।

पिली वाली पॉइंट लेके आओ उसके बाजु में भी एक ईमारत है।

एक स्टैर्स है जो लोखण्ड की बनी हुई दिख रही है।

इस रेंज में एक आदमी कोट पैंट पहेन के खड़ा है जिसके हाथ में एक पेपर है।

और एक आदमी ने हाथ में फाइल पकड़ी हुई है।

स्टैर्स नजर आ रहे है किनारे से भी ग्रिल लगी हुई है।

नए ट्रक है जिसमे चाबी राखी हुई है साइड में एक--

और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां पे कोई खेल हो रहा है जो सब देखने के वास्ते खड़े हैं।

टिल में छोटे छोटे टीले बने हुए है हरी घास में ढके हुए है दूसरी तरफ --

और पीछे की तरफ दीवार नज़र आ रही है और दूसरी तरफ से भी--

और एक बादामी कलर का घर है।

इस बिजली एक आदमी है सामने ही--

उसके दोसरी तरफ भी एक आदमी खड़ा है उसके पीछे भी एक आदमी है।

और एक पीछे की तरफ प्लस का सिंबल बना हुआ है।

और जिन्होंने उन्होंने यूनिफार्म पहन रखा है कुछ ने यूनिफार्म पहेन रखा है कुछ--

और पीछे की तरफ बड़ी बड़ी खिडकिया है जो--

इस इमेज में एक मिट्टी वाला रोड दिख रहा है सामने एक घर है ।

जो येल्लो कलर के गेट के अन्दर है।

और ऊपर की तरफ पतरे का शेड है जो ग्रीन कलर में है उसके ऊपर पेड़ों की पत्तियाँ आई हुई हैं।

लाइट ग्रीन पत्तियोंका पौधा और डार्क --

फोकस निचे जमीन टाइल्स पर पड़ रहा है।

इस इमेज में एक बेंनर दिख रहा है जिसपे सिटी सेंटर सलून लिखा हुआ है।

इस इमेज में एक लम्बी अ उसे अटैच होती--

इस सामने वाली ईमारत पे क्रोमा लिखा है छोटे छोटे बेंनेर्स लगे हुए है।

हमम दूसरी तरफ दो आदमी बेठे हुए है।

इस सामने एक वाइट कलर जिसके--

चारो तरफ कुर्सिया रखी हुई है और सामने एक बड़ी सी फ्रीज रखी हुई है।

सायकल की चीज़े रखी हुई है पार्ट्स --

बड़ा सा बैनर है जिसपे संक्रोस लिखा हुआ है ।